वह एक बिजली से चलने वाली मशीन से फर्श को खोद रहा है।

यह स्तंभ किसी किले या मंदिर के हो सकते हैं।

हमें ऐसा लगता है कि यह वाटर पार्क है।

इस ढेर पर हमें सूर्य की रोशनी पड़ती हुई नज़र आ रही है।

साथ ही हमें दीवाल पर ईसा मसीह की प्रतिमा भी नजर आ रही है।

साथ ही हमें बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ भी नजर आ रहा है।